ये सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है और वहाँ कुछ एक लाइट सफेद कलर का जलता दिख रहा है और एक पंखा लगा हुआ दिख रहा है बाहर में गोल चबूतरा बना हुआ दिख रहा हैं।

और एक बाइक भी खड़ी दिखाई दे रही है और ये रात का समय है आसमान काला दिखाई दे रहा हैं।

फ़ोन और गार्डन में नीचे कुछ हरे रंग की घास दिखाई दे रही है और ये दिन का समय है।